एक कैटरिंग वाला आले लाल कपड़ों में और मैनेजर व्हाइट कपड़ो में खड़ा हुआ है एक एक नीचे गार्डन है ऊपर एक आकाश है पीछे--

ये एक वाटर पार्क का चित्र है यहां कुछ लोग--

आलू है पीछे कुछ बोरे पड़े हुए हैं।

यह एक पूरा गोपाल डेयरी का चित्र रह अंदर डेयरी में कुछ मिठाइयां दिख रही है एक सेल्स मैन मिठाई बेच रहा है।

पीछे एक कुर्सी पड़ी हुई है बाहर बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है एक लड़का बाजू में दिख रहा है एक ब्लैक कलर की कुर्सी है और बहुत सारी व्हाइट --

बारी दिख रही है एक लड़की लिख रही है बहोत सारे कंपास बॉक्स बेंच पर पड़े हुए हैं बहोत सारे बेंचेस --

पीछे भी बहोत सारे नोट बुक पड़ी हुई है पीछे एक पेन भी--

अपने माता जी का ग्रंथ दिख रहे हैं पीछे एक सैनिटाइजर भी दिख रा--

बारिश से पूरा शहर पानी से भरा हुआ है।

कुछ लोग एयरोप्लेन की सफाई कर रहे है वह वो नीले कलर के कोट में एयरोप्लेन की सफाई कर रहे है उसके बाद में--

बोटे बैठ के जा रही है पीछे एक सूरज का ग्रहण--

यह एक बैग्स के दुकान है वहां--

हुए हैं पीछे एक फोन पे और पे पेटीएम का क्यू_आर कोड है उसके बाजू में।

यहाँ कॉलेज के व स्कूल के बैग मिलते--

एक यदिक ऑटो रिक्शा खड़ी हुई है उसके बाजू में एक बाइक जा रहा है उसके--

पड़े हुए हैं और यहाँ एक भाई जिम की ट्रेनिंग कर रहा--

पीछे एक ए_सी भी चालू है उसके बाजू में एक पंखा भी चालू है।

यह एक मच्छी मार्केट का फोटो है वहां एक टेबल पर बहोत बड़ी मछली पड़ी हुई--

ब्लैक कलर की चेयर दिख रही है वहां--

एक प्लग दिखा रहा उसके पीछे बहोत सारी लाइटे --